गढ़ है गाढ़ी की दीवार है सुरक्षा खातिर बनाई गई है और एक साइड रंग-रोगन होय्डों है आधा पर आधा पर होय्डों कोणी मरम्मत को काम चाल रियो है।

यह कोई कॉलेज का रिसेप्शन हॉल शो लग रहे हो है और बढ़िया टेबल है।

और बढ़िया डेजर्ट एरिया है बादलवाई हुयोड़ी है।

यह डेरी की दुकान है। श्री खादु शयाम डेरी मानासर नाम लिखियोडो है। पचास रुपया लीटर दूध है। दही साठ रुपया है। घी पांच सो रूपया है। पनीर मसला छाछ है।